यहाँ पर एक व्हाइट कलर की बहुत बिल्डिंग दिखाई दे रही है और एक खंबा भी दिखाई दे रहा है बहुत लंबा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दरबिल्डिंग दिखाई दे रही है और निचे वाले रूम की यहाँ एक गेट दिखाई दे रहा है।